ये फूल पार्क ह। ई फूल क खेती होला एईजा पूरा डिजाइन से फूल बोवल बा आ डिजाइनदार घास बनावल गइल बा।

ई पानी ह। पानी के ऊपर पूल बा टावर लागल बा ओप तार खींचल बा। जंगल बा पेंड बा।

इ पुरान बिल्डिंग बा पुरान हवेली बा कि राजा महाराजा क किला ह।